इ एगो मैरेज होल हवे जे बहुत ही चमक धमक के सजवट इ जिम बहुत ही स्पेशियल --

इ एगो घर हवे इ घर के दीवाल लाल कलर से पेन्ट भइल हवे इ घर के रेलिंग बहुत ही अच्छा लागेतावे इ घर की डिजाइन ओर --

महल में बहुत सारा दरवाज़ा और खिड़कियाँ नजर है | महल के आसपास बहुत ही स्वछता नजर आ रही है |

इ शहर बा शहर मे ओटो रिक्शा लोग चलावत बा तवे आरी सवारी के ऊ अपनी जगह पे ले जाय के पहुचाबे तारे ।

और एकरा बगल मे एगो घर बारे और एगो आदमी बैठएल बा --

बेडरूम मे एगो अलमारी बारे और बेडरूम मे एगो खिड़की भी बाड़े जोकि बाहर के दृश्य बेडरूम के चादर बहुत सुंदर लागेतारे और एकड़ दीवाल --

फोटो भी लगा है | दो मोर पंख भी लगा हुआ है और सब अपने-अपने में पढाई कर रहे है |